गौछा लपटे बा उपर लाइट वगैर दिख रही है सामने मे फ़ैन भी दिख रहा है बगल मे टेबल भी रखा है कुछ-कुछ सामने वगैरा रखेहु ई है।

तस्वीर में एक बैंक दिख रहा है जो कि स्टेट बैंक है| बगल में एक ए_टी_एम भी है।

पीछे कुछ लाइटे वगैरा दिख रही है | कुछ लोग खडे है | नीचे कालीने वगैरा बीछी हुई है ।

और कुछ कुछ अ बच्चे अपने अपने कागज काट के बना रहे हैं।